जिसमें से एक लोग तबला बजा रहे हैं और दो लोग गा रहे हैं।

इस फोटो में बहोत सारे वाहन सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी लकड़ी की बल्लियां लगी हुई है।

इस दृश्य में एक छोटा सा बकरी का बच्चा बैठा हुआ है।

के सामने टेबल पर पानी की बोटल फाइल कप प्लेट माइक एंड एक्सेट्रा सामान रखा हुआ है।

दिया है कई सारे पोस्टर्स भी लगे हुए।

यहां बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोग खड़े हुए--

इस फोटो में हमे एक स्टेशन दिखाई दे रहा है।

साइड में हरे रंग की पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में पीछे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

इस फोटो में हरे और पीले रंग का एक रिक्शा खड़ा हुआ है।

यहां बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।